और इन न बीस के नीचे चार खम्भे हैं लगाए गए हैं बीस के सपोर्ट में| एक दो तीन चार चार खम्भे लगाये हैं ।

ये कोई खे ये कोई जगह है जहां पे खुदाई हो रही है और कुछ लोग खड़े है और जे.सी.बी. मशीन से खुदाई हो रही है। ये किसी चीज से खुदाई कर रहे --

ये कोई दूध का फारम लगता है।

और ये भारे हरे- हरे हरे- हरे नजर अ आ रहे है ।

यहाँ पे कोई डांस का फंक्शन हो रहा है।

ये कोई रोड है रोड के बिलकुल अनु- रोड पे लोग चल रहे है लोग चल रहे है और सामने लाइटे लगी हुई है।